मशीन वगैरा लगा हुआ है स्विमिंग के लिए बनाया गया है।

कुछ झोला लेके सब खरीद रहे हैं।

एक टेंट लगा हुआ है मंदिर को बनाने के लिए --

यहा पत्थर गिट्टी से काम हो रहा है ढलाई हो रहा --

धान को तै तैयार कर रहे हैं।

छिछक रहे हैं गिर रहे हैं।

डांसिंग मशीन बना हुआ है जिसमे लिखा हुआ है निंदा इत्र सेण्टर |

सामने देखने में बहुत अमेजिंग है आसमान --

जिसमें एक आगे ही खड़ी है जो इमेज --

जो ग्लैमर है डीलक्स है ।

एक यहां शोरूम है जिसमे --